इस पर लाइट वाली झालर लटक रही हैं।

सफेद कलर के स्टेयर्स भी दिख रहे हैं।

हमें इस फोटो में हुंडई कार शोरूम नजर आ रहा है।

सामने की तरफ बहुत सारे घर बने हुए हैं।

हमें इस फोटो में दो ई-रिक्शें नजर आ रहे हैं।

हमें इस फोटो में कैफे का दृश्य दिखाया जा रहा है।

यहां पे बहुत सारे पिलर्स खड़े हुए हैं।

ऊपर बादल भी छाए हुए हैं।

सर्कल में नेट जैसा कुछ बना हुआ है।

बहुत सारे ई रिक्शा भी खड़े हुए हैं।

ऊपर की तरफ चीप किराना स्टोर गुप्ता बेकर्स का बोर्ड दिख रहा है।

हमें इस फोटो में एक लाल कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।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

दीवार पर पंखा घड़ी शीशे लगे हुए हैं।

हमे इस फोटो में एक मैरिज लॉन जैसा नजर आ रहा है।

हमें इस फोटो में किसी बुक की शॉप नजर आ रही है।

जहां पे बहुत सारी बुक रखी हुई हैं।

ऊपर साइड झालर लगी हुई है।

हमें इस फोटो में मारुति सुजुकी अरेना की एक एजेंसी नजर आ रही है।

एक आदमी बैग टांगें खड़ा हुआ है एक गेट नजर आ रहा है।